यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर अच्छी टाइल्स लगी हुई है।

यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक बाइक दिखाई दे रही है यहाँ पर एक मकान दिखाई दे रहा है।